यह एक चित्र हैं इसमें दिखाया जा रहा हैं--

जहां पर कई सारे हरियाले वाले हरे-हरे खेत है पास में एक पाइप भी है।

वो भी क्रीम कलर के कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं।